कुछ लाकर बने हुए हैं।

पलेट से एक्सरसाइज कर रहा है।

एक गुब्बारा टाइप का रखा हुआ है।

दुकान में एक फ्रिज है।

पीछे लड़की खड़ी हुई है एक दादी मां हाथ में लठी ले रखी है।

अल्का राहुल लिखा हुआ है।

सफेद कलर से का घर है।

पेड़ों की परछाई पानी पर पड़ रही है।

एक चॉकलेटी रंग की गाड़ी है कुछ व्हाटिया हैं कुछ ब्लैक है।

और कुछ मशीने रखी हुई है।

एक चेयर रखी हुई है ब्लैक कलर की।

इस घर में गिरी लगी हुई है।

यहां पर एक अ गैलरी --

जमीन पर रखा हुआ है।

बैग रखी हुई है एक थैला है।

कप रखें हुए हैं। कुछ पीले पिलो हैं।

यहां पर कुछ मूर्ति रखी हुई हैं।

ट्रैक्टर में जिसी मशीन जुड़ी हुई है।

एक आदमी खड़ा हुआ है पीछे।

कुछ लोहे के स्टैंड से रखे हुए हैं।

वो छोटी छोटी ट्रॉली सी है।

ये बहुत सी बुलेट है रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है।

पड़े हैं कट्टे पड़े हैं।

लड़के ने हाथ में घड़ी पहनी हुई है।

एक टावर दिख रहा है।

इसमें ग्रीन लाइट लगी हुई है एल_ई_डी लगी हुई है।

एक आदमी नीचे बैठा हुआ है।

गाड़ी के टायर को साफ कर रहा है एक बाल्टी है एक ब्रश है एक लाल बाल्टी है।

गाड़ी है ब्लैक रंग की। ब गाड़ी की लाइट दिख रही है। बराबर में एक कट्टा सा पड़ा हुआ है।

यहां पर एक स्पीकर सा रखा हुआ है।

दीवार के साइड में कुछ मैट रखे हैं।

पीछे डिजाइन बना हुआ है ब्लैक कलर का कुछ--

उपर ऐसे लिखा हुआ है शीशे लगे हुए हैं।

यहां पर एक वाइट कलर पोस्टर है इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है।

यहां पर एक बैंकेट हॉल है बैंकेट हॉल में कुछ बच्चे हैं।

लाल कलर की कुर्सियां हैं और सफेद कलर की कुर्सियां हैं।

एक आदमी जा रहा है।

बराबर में कुछ डिब्बे रखे हुए हैं छोटे छोटे खान्नों में।

बराबर में छोटी सी टंकी रखी हुई है।